यह एक चर्च का दृश्य है यहां बहुत से लोग खड़े दिखाइ दे रहे हैं।

यह एक पहाड़ की तस्वीर है। पहाड़ में मंदिर दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ दिखायी दे रहे हैं और बहुत सारे पेड़ भी दिखायी दे रहे हैं।

यहाँ पर उंची-उंची पहाड़े दिखायी दे रही हैं।

इस बगीचे में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह तशवीर चिड़ियाघर की है | यहाँ बोहोत सारे पेड़ दिखाए दे रहे है ।

यहाँं बहोत सारे फूल से सजावटें हो रखी हैं।

पहला गुलदस्ता लाल हरा बैगनी रंग का है। दूसरा बैगनी रंग का है तीसरा गुलाबी रंग है।

वे रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए है उनके हाथो मे गम है।